ये एक बड़ा करके ब्रिज दिखाई दे रहा है।

उपर भी मे बहोत ज्यादा सामान रखा हुआ है।

लाइट भी जल के दिखाई दे रहा है।

फोटो में से एक प्ले दिखाई दे रहा हैं प्लेट कप जो खाने वाला चीज पर रखा हुआ है।

अंदर में जो हैप्पी बर्थडे भी लिखा दिखाई दिखा दे रहा है।

जर रहा हुआ है लाइट भी जल के दिखाई दे रहा है।

पे ये सब भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

इसका ऊपर जो एक लाइट भी जल के दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में कुछ जंगल दिखाई दे रहा है।

स्टैचू के सामने छोटा छोटा स्टैचू भी दिखाई दे रहा है उसमें जो टाइल्स लगा के है।

बहुत ज्यादा स्कूटी यह सब भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है।

वो साइड में भी टीना से बनाने वाला एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

अंदर में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

फोटो का जो रात का नजर आ रहा है।

में सोलर पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे छोटा छोटा--

सामने में भी एक घर है ये घर जो बोतल से बनाया हुआ है।

और पीछे में भी एक घर दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।